और बहुत सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यह एक दुकान है इस दुकान के आगे सरवत बट रहा है।

और कुछ सामान भी लकड़ी का रखा हुआ है।

और एक पोस्टर लगा हुआ जिसपे प्रियांशु पैथोलॉजी लैब लिखा हुआ है।

और झरने के ऊपर भी बहुत सारे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।